कर रहे है यहाँ एक --

बहुत लाइट डी.जे. लगाए गये हैं।

योगा करने से हम फिट रहते हैं |

यह जगह काफी सुंदर है।

यह एक चौकी रखी हुई है |

फोटो घिंच रहा हैं। शीशे के पास यह लड़का खड़ा है।

है यह विद्या महाविद्यालय बहोत ही बड़ा है बहुत सारे लड़के लड़कियाँ इस महाविद्यालय में पढ़नते हैं यहाँ बी.ए. तक की पढ़ाई हो --